बहुत सारे नए स्कूटर दिखाई दे रहे है ये एक शोरूम है जिसमें बहुत सारे स्कूटरो को रखा गया है।

ये बहोत ही बड़ा है शोरूम जिसमें बहोत सारे--

यह तस्वीर एक बहोत बड़ी सड़क की है। यह सड़क बहुत ही चौड़ी है इस पर बहोत सारे लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये तस्वीर एक बहोत ही बड़ी मि--

बहोत सारी लाइटे भी जल रही हैं।

इसे बहोत ही सुंदर तारिके से सजाया गया है।

इस तस्वीर में बहुत सारे पौधे नजर आ रहे--

चारों तरफ एक जैसे पौधे रखे हैं ये पौधे बहोत ही सुंदर और ताजा दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक जिम दिखाई दे रहा--

और यहां दीवारों का रंग गुलाबी रखा गया है।

यहां कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं।

यह तस्वीर एक बहुत बड़ी दुकान की है। यहां पर दो कार खड़ी हुई है यह कर सफेद और ग्रे कलर की है।

लाल रंग की कुर्सियां रखी हुई है और बहोत सारे गुब्बारे लगाए गए--

और उसने एक मोबाइल लिया हुआ है।

इसमें बहुत बड़ा तालाब नजर आ रहा है और यहां रंग बिरंगे--

और कुछ फूलों से इसे सजाया गया--

यहां दीवारों पर पेंटिंग लगी हुई है।

बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

और यहाँ कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है ये टेबल बहोत ही बड़ा है यहाँ हरे रंग का दिखाई दे रहा है।

एक आदमी योगा कर रहा है।

यह तस्वीर एक मंदिर की लग रही है मंदिर का दरवाजा स्टील का है।